यहाँ पर बुक भी मिलता है किताब भी मिलता है कॉपी भी मिलता है और रिचार्ज भी होता है|आईडिया एयरटेल जिओ सबका रिचार्ज होता है।

बहुत अच्छा लग रहा है| यहाँ पर जो है घेरा हुआ है जो की बहुत सुंदर लग रहा है| यह जो है आकर्षित करने वाला --

यहाँ जो है उजला कोई-कोई लाल कोई काला कोई गेरुआ कलर का बकरी सब है जो की देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।

यहाँ पर जो है जे खुला हुआ है जो की देखने में और खूबसूरत लग रहा है तीन-तीन चक्का लगा है इसमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।